दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति फोन से स्कैन कर रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो दिखाया गया है।

ओड़िआ रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से सरिया के रखा गया है।

यहां पे बहुत सारे लोग मछली खरीदने के लिए आए हैं।

इस दुकान का नाम तेज़ बुक स्टोल हैं और इस दुकान के बाहर में एक आदमी खड़े हैं।

इसके बाहर में बहुत सारे टेबुल लगाए गए है जहां पे दो व्यक्ति है।

सारे समान को अलग अलग डिब्बे में पैक करके रखे गए हैं।

यह एक बिग बाजार का फोटो दिखाया गया है।

और इसके दीवार सफेद रंग के हैं।

और यहां पे बहुत सारे आदमी रनिंग कर रहे हैं।

इस नदी में बहुत ही ज्यादा पानी है।

यह ब्लू रंग का बहुत ही बड़ा गेराज है।